और यह जो देख पा रहे हैं ये एक शादी का स्टेज है। ये बहोत ही अच्छे और बहोत ही सुन्दर लग रहा है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं ये एक ये हमें --

ये भी मशीने ये अपना जो काम कर रही हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि हमें कुछ इस तरीके से लग रहा जैसे कोई शिप्स वगैरा हो।

चर्च में बहु काफी अच्छे डिजाइंस वगैरा और शीशे वगैरा लगे हुए हैं। इसमें कलर काफी अच्छा व्यू है और जैसा हम देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ और आगे पीछे और ऊपर नी --

नीचे में डिजाइंस काफी ऐ अच्छा लग --

यह एक ए.टी.एम. हैं जन --

निकालने के लिए बहोत ही ए अच्छी ई सुविधाएँ और ये लोग इससे बहोत ही ई लाभ भी उठाते है।

ये पत्थर से बने हुए हैं। ये बहोत ही अच्छे भी लग रहे हैं। ये घूमने के लिए या फोटो वगैराह से खिंचवाने के लिए बहोत ही --